यह किसी मॉल का चित्र है।

मोल में बहुत सारे गरम कपड़े रखे हुए हैं।

रूम में बहुत सारे लाइटे लगे हुए है साथ ही बैलून भी वाइट और हर हरा कलर लगा हुआ है।

योगा रूम में दो पोस्टर लगे हुवे हैं।

एक लड़का हाथ जोड़कर बैठा हुआ है।

इसमें छे हरे लंबे लंबे पर्दे टांगे गए हैं।

दुकान का बोर्ड में मां वैष्णो पेंट्स एंड सेनेटरी लिखा हुआ है।

सामने एक ब्लू कलर का बड़ा सा गेट दिख रहा है।

पुल पर लोहे का रेलिंग बना हुआ है।

यह चित्र बड़े साइज वाला मार्बल का है जिसका कलर ब्लैक है।

बहोत सारे खिड़की और दरवाजे भी दिख रहे हैं।

अ ब्रिज का जो दीवार है वो व्हाइट और ब्लैक कलर का कलर किया हुआ है।

ब्रिज बहुत काफी लम्बा है।

एक दो टावर भी दिख रहे हैं बिजली का खंभा दिख रहा है।

तीन गाड़ी भी लगी हुई है साथी दो तीन आदमी सामान खरीदते हैं नजर आ रहे हैं।

एक आदमी खड़ा हो होकर बात कर रहा है।

नीचे काफी मिट्टी है जिसमें मजदूर काम कर रहा है।

बगल में एक पुतला भी रखा हुआ है जो हाथ जोड़े खड़ी हुई है।

सामने बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें बच्चों के साइकिल लगाया हुआ है।

ही एक बाइक भी दिख रहा है।

यह किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले दुकान का चित्र है ।

दुकान में कई प्रकार के इलेक्ट्रानिक सामान रखा हुआ है।

एक लड़की फोटो खींच रही है जो ब्लू कलर का शूट पहनी हुई है।

दुकान का दीवार का कलर हल्का येलो है दुकान के बाहर दो केले का थंब पूजा वाला रखा हुआ है।

बाहर में दो तीन लेडिस भिक्षा मांग रही हैं जो छठ पूजा में मा मांगा जाता है दो तीन बाइक खड़े हैं और एक आदमी भी खड़ा है।

इस चित्र में दो घर दिख रहे हैं।

यहाँ पर कुछ कुर्सी और सजाया हुआ टेबल दिख रहा है पानी का कंटेनर दिख रहा है एक बाइक भी है साथ ही कुछ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक लड़का बैठकर लैपटॉप चला रहा है।

यह किसी घड़ी की शॉप का दु अ चित्र है।

जिम के सामने कार्डियो लिखा हुआ है।